इन्होंने यहाँ पर गेम का यूनिफॉर्म पहना हुआ है।

यहां दुकान हमें पर्दे की लग रही है।

हमें यहां पर काफी सारे बच्चे लोग दिख रहे हैं।